दूर पे फ्रिज रखी हुई है।

उसके अंदर कुर्सियां रखी हुई है।

इसके पिलर सफेद कलर के हैं।

इसमें एक बाइक एक एक्टिवा खड़ी है।

ये एक मोबाइल की दुकान है।

एक बच्ची जो उससे खेल रही है।

दूर पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

कुछ लोग मैच खेल रहे हैं।

एक आदमी लाल शर्ट में खड़ा है एक सड़क है।

एक इंटरनेशनल बुक हाउस है।

इसमें दो केक रखे हुए हैं।

इसमें बहुत सारी फूलों की मालाएं टंगी हैं।

यहाँ पर बहुत सारे बेड लगे हुए हैं।

और डोर की तरफ एक वाटर टैंक दिख रहा है।

एक कुर्सी पर लिखा है।

ये एक स्नूकर की टेबल है।

यहाँ पर बहुत सारी टेबिलें रखी हैं।

कुछ लोग काम कर रहे हैं।

एक हरी कलर की बॉटल है।

एक पर्दा लगा हुआ है।

बहुत सारे पर्दे डले हुए हैं।

ये एक यूनिवर्सिटी है।

जो लाल और सफेद कलर से पुती है।

बहुत सी सब्जी की टोकरियां रखी हुई हैं।

और हरियाली दिख रही है।

ये की बेकरी है।

एक सफेद कलर का जाली का गेट है।

इसमें रंग बिरंगे बैलून लगे हैं।

जहाँ पर बहुत से फूल गमलों में रखे हैं।

बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

ये एक निर्माण सदन की बिल्डिंग है।